ये बिहार की एक कल्चर है जो कि ये सेलिब्रेट किया जा रहा है बहुत सारी लेडीज जमुना नदी के किनारे खड़ी हैं।

ये एक द हिंदुइज्म कांसेप्ट इंग्लिश के वहां का फोटो है जहां पे काफी सारी साइकिल्स खड़ी हैंकुछ स्टूडेंट्स भी खड़े हैं।

और काफी अच्छी लाइटनिंग है आस पास एक--

यहां पे स्टूडेंट्स भी खड़े हुए हैं।

ये एक कंस्ट्रक्शन साइड का फोटो है जहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं।